यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका कलर सफेद दिखाई दे रहा है उसमें एसी लगी हुई दिखाई दे रही है रोड एक एहा रोड से बना हुआ दिखाई दे रहा है।

फल रखे हुए दिखाई दे रहे है फलों का कलर हरा काला पीला लाल दिखाई दे रहा है --

क्रेटे रखी हुई दिखाई दे रही है टोकरियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं उनमें न्यूजपेपर दिखाई दे रहे है।

कार ही कार दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है बिल्डिंगे दिखाई दे रही है कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ एक तालाब दिखाई दे रहा है तालाब मे जहाज दिखाई दे रहा है रस्सियों से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है पत्थर हुए रखे दिखाई दे--

मकान दिखाई दे रहा हैं ऊपर चकपचनी दिखाई दे रही आसमान दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ एक स्विमिंग पूल दिखाइ दे रहा है इसमे कुछ मशीने लगी हुई दिखाई है बहुत सारे लोग खडे हुए दिखाई दे रहे है हरी घास दिख रही है पड़े-पोधे दिखाई दे रहे हैआसमान --

दिखाई दे रही हैं एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही हैं उसपे एक गीट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

दुकान दिखाई दे रही हैइसमें एक तो ओर काटा रखा हुआ दिखाई दे रहा हैडब्बे रखे दिखाई दे रहे है कुछ पोस्टर चिपके दिखाई दे रहे है सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक दुकान दिखाई दे रही हैं कंप्यूटर रखे हुए दिखाई दे रहे है कुछ बुके रखी हुई दिखाई दे रही है कुर्सियां दिखाई दे रही हैं गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं।

हम मे दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।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

पेन रखी हुई दिखाई दे है एक कागज़ रखा हुआ दिखाई दे रहा है कंप्यूटर रखा हुआ दिखाई दे रहा है माउस दिखाई दे रहा है पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे ए लोग दिखाई दे रहे है।